यह एक वाटरफॉल है और यहां पे कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है।

जोकि ग्रीन कलर का है और दूसरी ने हाथ में पॉलिथीन उठाया हुआ है।

और दरवाजा भी ब्राउन कलर का है।

ग्रीन और ब्लू कलर के पैंट्स पहने हुए हैं।

और यहां पे कुछ बॉक्सेस है।

और ट्रीज है और पहाड़ है और आसमान पे बादल छाए हुए आए हैं।

ग्रीन रेड और वाइट कलर की साड़ियां पहनी हुई है।

और यहां से एक वाइट कार और है।

और इस पे गोल्डन कलर के हैंडल्स लगे हुए हैं।

दो लड़कियां हैं एक लड़का है इन्होंने एस_डी_आर_एफ की यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

और एक चप्पल यहां पे नजर आ रही है।

और सीढ़ियों पे लाइट्स आ रही है।

ये एक सड़क है और यहां पे ट्रैफिक है और यहां पे।

स्कूटी रुकी हुई है और एक कार है।

और एक आदमी खड़ा है उसने ऑरेंज कलर की शर्ट --

ये यहां पे कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

ये एक ऑफिस लग रहा है और यहां पे टू चेयर्स एक टेबल और एक अ ।

और उसने फेस पे मासक लगाया हुआ है।

कुछ चेयर्स लगी हुई है पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

और एक स्कूटी की लाइट जल रही है और वो रुका हुआ है।

चेयर्स एंड टेबल्स हैं और सामनी अ टीचर्स है।

और ये उसने व्हाईट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

सब चीजें है और यहां पे बॉटल्स है और यहां पे जूसेस है।

पैंट पेहनी हुई है उसके पैंट पे ब्लैक कलर की बेल्ट है।

ये एक शॉप है और यहां पे हर किसम की शैंपूस और।

और यहां पे कॉप्स है और यहां पे ये।

पीछे से दो आदमी हैं।

और वो उस उसने ब्राउन कलर की जैकेट और पैंट पहनी हुई है उसके सर पे टो।

ये किचन है और यहां पे बलून्स लगे हुए हैं।

पिंक है और यहां पे नमक है और यहां पे एक ब्लैक चियर है।

ये दो आदमी हैं और इन्होने।

ओल पॉलिथीन भरा हुआ है कमरे में ए_सी है और लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं।